बहुत पूरा पानी है पानी बहुत गंदा है।

ये एक मॉल है यहां पे बहुत सारा लड़का लोग का जींस रखा हुआ है ये लड़का लोग का--

पीछे खिड़की है कि येलो कलर का ड्रम है।

कार ब्लू कलर का है वहां बहुत सारा रेड कलर का पिलर है पीछे दीवाल है जो सीमेंटेड है टायर रखा हुआ है बहुत सारा टायर खुला हुआ है।

एक राम जी का मंदिर करके आश्रम है एक पिंक कलर का--

ये घर है जहां पे बहुत सारा बैलून लगा हुआ है व्हाइट कलर का बैलू है ब्लू कलर का है येल्लो कलर का है रेड कलर का है बहुत सारा सीलिंग लाइट है फैन है।

ब्लू कलड़ का एक बिल्डिंग में बहुत सारा घर है।

ग्रिल है व्हाइट कलर का पेंट है रेड कलर का पेंट है येलो कलर का पेंट है पिंक कलर का पेंट है। बहुत सारा फूल है।